लकड़ीया है लकड़ी पर खड़े हैं ये सब।

यह एक सैलून है यहाँ बोहुत अच्छा केश काटा जाता है और ए.सी. और भी लगा है और एक-दो आदमी है । एक आदमी दाढ़ी बना रहे हैं और एक मोबाइल चला रहे हैं बैठा है उधर बोहुत सारे --

ये लगता सैलून है उधर दोकान है आदमी आर भी है यहाँ पर गाड़ी भी लगी है फील्ड भी है |